इस फोटो में मुझे लोहे की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे पंखे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे टेबील कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक आभूषण की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे महिला दि--

इस फोटो में मुझे घर दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे बेड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे अलमारी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बिजली की तारें दिखाई दे--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

इस फोटो मे मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।

इस फोटो मे मुझे मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे हाॅल दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे फिशल पट्टी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गन्ने का जूस दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो मे मुझे रूम दिखाई दे रहा है।